उस घर के बगल में एक छोटा सा मंदिर भी बना है।

वहां पे एक रेड कलर का झंडा भी लगा हुआ है।

मुझे इस पिक्चर में एक सोसाइटी का गेट नजर आ रहा है।

वह सोसाइटी का गेट ग्रे कलर का है।

स्टेज पे डांस कर रहे हैं।

और सामने में कुछ आईने भी लगे हुए हैं।

लेकिन वहाँ कोई भी मजदूर नहीं दिखाई दे रहा है।

पीछे कुछ लड़के बातें करते हुए दिख रहे हैं।

और पार्किंग में कुछ गाड़ी भी खड़ी हुई है।

और सामने में कुछ पहाड़ भी नजर आ रहे हैं।

उस कमरे में एक खाली पलंग रखा हुआ है।

और सामने एक लड़का भी खड़ा हुआ है।

वह रेस्टोरेंट काफी सुंदर लग रहा है।

और वह बेड ऊपर नीचे दो तरफ है।

बेंक के बाहर काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

बगल में एक ब्लैक कलर का गेट भी लगा हुआ दिख रहा है।

वहां किसी का रिसेप्शन चल रहा है।

और उस जिम में काफी सारी जिम की मशीन्स रखी हुई हैं।

यहां मोर किसी पेड़ की तरफ देख रहा है।

और दूसरी कार ग्रे कलर की है।

उस कमरे मे दो पलंग रखी हुए हैं।